आगे एक खंभा दिखाई दे रहा हैं ऊपर से खूब तारे लटके हुये दिखाई दे रही हैं आगे एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा हैं ये बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं पेड़ भी हैं।

यहाँ पर एक ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है उसके अन्दर एम एक ए.टी.एम. की मशीन रखा हुआ हैं आगे गेट लगाया हुआ हैं आगे से रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

रास्ते से एक औरत रास्ते पार करते हुये जा रही हैं आगे भी एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

वहाँ पर एक बड़ा - सा पेड़ दिख रहा हैं वहाँ पर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा हैं उनके पीठ से एक बड़ी - सी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

वहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही हैं जहाँ पर दो - तीन ऑटो खड़े किये हुये वहाँ से एक आदमी गुजरते हुये दिखाई दे रहा हैं वहाँ पर बड़े - बड़े पेड़ दिखाई दे हैं पेड़ के पीछे एक छोटा - सा घर दिखाई दे रहा हैं।